इस चित्र में हमें एक मैदान नजर आ रहा है।

सुंदर चांद आसमान में दिख रहा है पेड़ नजर आ रहे है।

इस इमारत का नाम जिला पंचायत धार है।

दो मोटरसाइकिल नजर आ रही है।

भवन के अंदर कुछ लोग नजर आ रहे है आस पास पहाड़ियां दिख रही है।

फोटो में हमें एक रिसेप्शन के मेन गेट का दृश्य दिखाया गया है।

जिम की दीवार का कलर रेड एवं ग्रे है।

इस नदी में बहुत से लोग नहा रहे हैं। एक व्यक्ति ने लाल कलर की टी-शर्ट पहनी है।

यह एक आनंद भोजनालय तथा रेस्टोरेंट है।

एक व्यक्ति ने ब्लू कलर की शर्ट तथा दूसरे ने--

जो की इंदौर में स्थित है।

लाइब्रेरी शॉप नजर आ रही है।

इस चित्र ने हमें एक डेरी पालन नजर आ रहा है।

नीचे बहोत सारी मछलियां दिखाई दे रहे है।

एक व्यक्ति चेयर पर बैठा है।

यहां पर मसाला डोसा पाव भाजी छोले भटूरे मंचूरियन उपलब्ध है।

आस पास घने हरे भरे वृक्ष तथा पेड़ पौधे मौजूद है।

पास में एक बंद शॉप है।

दुकान के पास हमें सीडी नजर आ रही है। दुकान के बाहर--

आसमान में बहोत ही कोहरा है दृश्य बहोत ही मन मोहक--